एक बीचों बीच स्विमिंग पूल बना हुआ है साइड में कुछ टेबल्स रखी हुई है उसके थोड़ी ही दूरी पे --

ये जो मुझे तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक पार्क की तस्वीर है जिसके अंदर काफी सारे जानवर है।

वो एक चिड़ियाघर की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है चिड़ियाघर बीकानेर और नीचे एक गेट बना--

उनके कलर्स अलग अलग हैं किसी का येलो कलर्स किसी का ब्लैक किसी का ब्लू तो किसी का रेड कलर है और ये सारी की सारी यहां पे --

ये जो आप मेरे सामने इमेज़ देख रहे हैं वो एक कॉलेज की है जो की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज --

ये जो इमेज आप मेरे सामने देख रहे हैं वो एक खाने की इमेज --